इस पिक्चर में एक प्लेग्राउंड दिखाई दे रहा है जिसमे बहुत से लोग है कुछ बच्चे दिखाई दे रहै है जो फुटबॉल खेल रहै है।

एक हि बॉर्डर ट्रेनी दिखाई दे रही है।

इस पिचर में एक नदी दिखाई दे रही है तथा नदी के पास एक व्यक्ति खड़ा हुआ है तथा उसकी आंगे एक बएक खड़ी हुई है।

यह एक पार्क की फोटो है जिसमे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है तथा यहाँ बच्चो की खेलने की जगह है।

उसके आस-पास गार्डन दिखाई दे रहा है गार्डन में बोहत से प्लांट्स खड़े हुए है।

यह एक पर्दा सिलिंग की पिक्चर है।

जो अभी पूरी तरह नहीं बानी हुई है के सामने ईंटे तथा रेत रखी हुई है तथा--

इस पिक्चर में एक गाडी दिखाई दे रही है गाडी के बाजु में एक गेराज है।

इस इस स्टोर के आगे बहुत पानी की बोत्त्लों के पैकेज रखे हुए है ।

जिसमे बोहत से लोग काम कर रहे है।

यह एक स्कूल की फोटो है।

जहाँ पर पार्क के चारो ओर लोहे की--

इस स्टोर के सामने एक व्यक्ति खड़ा कुछ सामान खरीद रहा है और इस स्टोर के बाजू में एक और स्टोर खुली हुई है तथा--

स स्टोर के सामने एक पेड़ लगा हुआ है।

इंसान खड़ा हुआ है और दो बच्चे खेल रहे है और दो बिल्डिंगे बनी हुई दिखाई दे रही

पिक्चर में हमे बहोत से ठेलो पर सब्जियाँ तथा फल रखे हुए दिखाई दे रहे है तथा इस पिक्चर में रोड पर एक बाइक भी निकल रही है।

इस पिक्चर में हमे बहोत सी कुरकुरे टंगी हुई दिखाई दे रही है।